इस इमेज में हमें एक पाउंड नजर आ रहा है पाउंड में हमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और आसपास हमें एक सीढ़ियां दिखाई दे रही है।

पीले रंग के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं जो गुलाबी रंग के हैं और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में हमे एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल में नील रंग का पानी भरा हुआ है।

ये रोड पर हमे सफेद पट्टी दिखाई दे रही है और सामने की तरफ आसमान दिखाई दे रहा है आसमान साफ नजर आ रहा है और उसमे बादल नहीं दिख रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक किला दिखाई दे रहा है किला हमें सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है और उसपे गुलाबी रंग भी दिख रहा है।

इस इमेज में हमें एक ज़ू दिखाई दे रहा है ज़ू में हमें मोर दिखाई दे रही है मोर हमें ब्राउन रंग की दिख रही है।

इस इमेज में हमें एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज पर हमें नीले सफ़ेद और गुलाबी रंग के गुब्बारे भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमे एक किला दिखाई दे रहा है किले के बिच में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे हमे एक वाटर पार्क दिखाई दे रहा है पार्क मे हमे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और सामने हमे एक--